ये रोड है रोड पे तार दिखदिख रहे है ऑटो दिख रही है उसके पीछे एक और ऑटो दिख रही है बड़ी मल्टी दिख रही है खिड़कियां दिख रही है।

आधा रास्ता घास वाला है बाइके खड़ी हुई है दूर दिख रही है ओर लोग भी खड़े हुए हैं एक इंसान अंदर जारा--

यह दो लड़-- तीन लड़के है दो लड़किया है साथ मे फोटो ले रहे है एक साड़ी पहनी है और एक दूसरी भी साड़ी पहनी है गुलदस्ते लगे हुए है पीछे व्हाइट और रेड कलर के फूल है।

पिक कलर का पर्दा है पीला पर्दा है लाइट भी चमक रही है।

और हरी वाली जमीन है और घास उग रही है आसमान दिख रहा है धूप दिख रही है।

ओर मंदिर सजा हुआ है।

एक घाटी है पेड़-पौधे लगे हैं ऊपर साइड में रोड बीच मे रोड है साइड मे पेड़-पौधे है इधर भी पेड़-पौधे है एक डंडा लगा हुआ है।

और ईटों ईंटें-ईंटें दिख रही हैं नीचे ऊपर आते धूप दिख रही है नीचे।

एक बाइक खड़ी है और एक आसमान दिख रही है जमीन दिख रही है धूप दिख रह --